पिंक मे दिखाई दे रहा है। जालीदार खिड़की लगे हुए है और कुछ बना रहे है बेंच के ऊपर रखा है।

गाना गा रहे है। कुछ बैठे है। कुछ खड़े है। लाइट्स लगाया है। रंगबिरंगा ब्लू कलर का।

ये ए_टी_एम दिखाई दे रहा है यहा पर पुलिस भी खड़े हुए है और बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है जो की पैसे निकाल रहे है।